और एक वाइट कलर की कुर्सी रखी हुई है।

यहां पर एक वाइट कलर की कार खड़ी हुई है।

फादर ने अपने गले में ग्रीन कलर की--

बाजू में एक छोटा सा बच्चा भी गोद में है।

और खुला आसमान भी दिख रहा है।

और यहां पर एक बिल्डिंग का काम चल रहा है।

साइड में एक बैरल भी रखा हुआ है--

बाजू में एक ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है।

और एक ए_टी_एम भी दिख रहा है।

ए _टी _एम को पूरा लाल कलर लगाया हुआ हैं।

बहुत सारे लोग ठहरे हुए भी हैं।

यहां पर बहुत सारे सामना रखे हुए हैं।

एक काले कलर का फुटबॉल भी रखा हुआ है।

एक दिन का मंजर दिख रहा है।

यहां पर बड़ा सा समंदर दिख रहा है।

और बड़े-बड़े टावरें भी लगे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे लेडीज के बैग रखे हुए हैं।